ruby में control statements के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम निम्न उपयोग करना सीखेंगे
if statement elsif statement
else case statements
यहाँ हम उपयोग कर रहे हैं उबन्टु वर्जन 1204
ruby 193
इस ट्यूटोरियल के अनुकरण के लिए आपके पास इंटरनेट कनैक्शन होना आवश्यक है
आपको लिनक्स कमांड्स टर्मिनल और टेक्स्टएडिटर का ज्ञान होना ज़रूरी है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
शुरू करने से पहले याद रखें कि हमने पहले ttt डिरेक्टरी बनायीं थी
उस डिरेक्टरी पर जाते हैं
और फिर ruby hyphen tutorial control hyphen statements
अब हम उस फोल्डर में हैं आगे बढ़ते हैं
ruby में if statement का रचनाक्रम निम्न प्रकार दिया है:
if condition
rubyकोड end
एक उदाहरण देखते हैं
gedit में एक नयी फाइल बनायें जैसे शुरुवाती ruby ट्यूटोरियल्स में प्रदर्शित है
इसे if hyphen statement dot rb नाम दें
मेरे पास if statement का एक कार्यकारी उदाहरण है
इसको पूरा करते समय ट्यूटोरियल को बीच में रोक सकते हैं और कोड टाइप करें
मैंने इस उदाहरण में एक if statement घोषित किया है
पहले मैं एक लोकल वेरिएबल my_num घोषित करती हूँ और इसको 2345 वैल्यू देती हूँ
फिर एक if statement घोषित करती हूँ
if स्टेटमेंट में puts मेथड घोषित हुआ आउटपुट प्रदर्शित करेगा
अगर my_num की वैल्यू 0 से बड़ी है तो if स्टेटमेंट इसे जंचेगा
अगर ऐसा है तो यह वो निर्दिष्ट string प्रिंट करेगा
अब टर्मिनल पर जाएँ और टाइप करें
ruby space if hyphen statement dot rb
the value of my_num is greater than 0 आउटपुट प्रदर्शित होगा
यह आउटपुट सिद्ध करता है कि if कंडीशन फिर से ट्रू हुई है
अब आप ruby में if स्टेटमेंट लिखने के लिए सक्षम होने चाहिए
अब आगे ifelse स्टेटमेंट देखते हैं
else उपयोग करने के लिए रचनाक्रम है:
if condition ruby कोड
else ruby कोड
end
एक उदाहरण पर देखते हैं
gedit में एक नयी फाइल बनायें जैसे शुरुवाती ruby ट्यूटोरियल्स में प्रदर्शित है
इसे if hyphen else hyphen statement dot rb नाम दें
मेरे पास ifelse स्टेटमेंट का कार्यकारी उदाहरण है
इसको पूरा करते समय ट्यूटोरियल को बीच में रोक सकते हैं और कोड टाइप करें
मैंने इस उदाहरण में एक ifelse स्टेटमेंट घोषित किया है
पहले मैं एक लोकल वेरिएबल my_num घोषित करती हूँ और इसको 1 वैल्यू देती हूँ
फिर मैं एक if statement घोषित करती हूँ
if स्टेटमेंट my_num की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो जंचेगा
अगर ऐसा है तो यह वो निर्दिष्ट string प्रिंट करेगा
यदि नहीं तो else स्टेटमेंट पर जायें
और यह उस string को प्रिंट करेगा जो वहां निर्दिष्ट है
अब टर्मिनल पर जाते हैं और टाइप करें
ruby space if hyphen else hyphen statement dot rb
और आउटपुट देखते हैं the value of my_num is lesser than 0 आउटपुट प्रदर्शित होगा
यह निष्पादित किया हुआ else स्टेटमेंट दिखाता है
अब आप ruby में ifelse स्टेटमेंट लिखने के लिए सक्षम होने चाहिए
अब आगे ifelsif स्टेटमेंट देखते हैं
elsif उपयोग करने के लिए रचनाक्रम है:
if condition ruby कोड
elsif condition ruby कोड
else ruby कोड
end एक उदाहरण देखते हैं
gedit में एक नयी फाइल बनायें जैसे शुरुवाती ruby ट्यूटोरियल्स में प्रदर्शित है
इसे if hyphen elsif hyphen statement dot rb नाम दें
मेरे पास ifelsif स्टेटमेंट का कार्यकारी उदाहरण है
इसको पूरा करते समय ट्यूटोरियल को बीच में रोक सकते हैं और कोड टाइप करें
मैंने इस उदाहरण में एक ifelsif स्टेटमेंट घोषित किया है
यहाँ भी मैं एक लोकल वेरिएबल my_num घोषित करती हूँ और इसको 1 वैल्यू देती हूँ
फिर मैं एक if statement घोषित करती हूँ
if स्टेटमेंट my_num की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो जांचेगा
अगर ऐसा है तो यह वो निर्दिष्ट string प्रिंट करेगा
अगर यह ट्रू नहीं है तो इसे elsif सेक्शन में जाना होगा
अब यदि my_num की वैल्यू 1 है तो यह जांचेगा
अगर यह ट्रू है तो यह उस string की वैल्यू प्रिंट करेगा जो वहां निर्दिष्ट है
my_num की वैल्यू न तो 0 से बड़ी है और न ही 1 के बराबर है तो इसे else सेक्शन में जाना होगा
लेकिन चूँकि my_num की वैल्यू 1 है तो यह else ब्लॉक में आगे नहीं बढ़ेगा
और ये conditional स्टेटमेंट से बाहर जायेगा
अब टर्मिनल पर जाएँ और टाइप करें
ruby space if hyphen elsif hyphen statement dot rb
और आउटपुट देखें
the value of my_num is 1 and is lesser than 0 आउटपुट प्रदर्शित होगा
वापस अपनी फाइल पर जाते हैं और my_num की वैल्यू को 5 से बदलते हैं
कोड को सेव करें और इसको टर्मिनल पर निष्पादित करें
अतः अब यह if कंडीशन को पूरा करता है और वो निर्दिष्ट स्ट्रिंग प्रिंट हुई है
my_num की वैल्यू 0 से बड़ी है
अपनी फाइल पर वापस आते हैं और my_num की वैल्यू को 5 से बदलते हैं
कोड को सेव करें और इसको टर्मिनल पर निष्पादित करें
इस स्थिति में यह else कंडीशन को पूरा करता है और else ब्लॉक के अंदर puts स्टेटमेंट निष्पादित होता है
अब आप ruby में ifelsif स्टेटमेंट लिखने के लिए सक्षम होने चाहिए
अब आगे case स्टेटमेंट देखते हैं
case स्टेटमेंट एक विशेष सलेक्शन पर आधारित control flow स्टेटमेंट है
इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हम case स्टेटमेंट का रचनाक्रम देखते हैं
case उपयोग करने के लिए रचनाक्रम :
case variable
when value 1
ruby code when value 2
ruby code else
ruby code
end अब एक उदाहरण देखते हैं
gedit में एक नयी फाइल बनायें जैसा ruby के प्रारंभिक स्तर के ट्यूटोरियल्स में दिखाया गया है
इसको case hyphen statement dot rb नाम दें
मेरे पास case स्टेटमेंट का एक कार्यकारी उदाहरण है
इसको पूरा करते समय ट्यूटोरियल को बीच में रोक सकते हैं और कोड टाइप करें
इस उदाहरण में मैंने एक case स्टेटमेंट घोषित किया है
यहाँ मेरे पास एक print स्टेटमेंट है जो टर्मिनल पर एक प्रश्न प्रिंट करेगा
फिर मैं gets को कॉल करती हूँ जो मानक इनपुट से डेटा के सिंगल लाइन को स्वीकार करेगा
फिर मैं chomp उपयोग करके इनपुट डेटा के new line characters को काटती हूँ
मैं परिणाम domain नामक वेरिएबल को देती हूँ
फिर मैं एक case स्टेटमेंट घोषित करती हूँ
इसके अंदर मैं एक when स्टेटमेंट घोषित करती हूँ
यह जांचता है कि वो निर्दिष्ट स्ट्रिंग domain की वैल्यू के समान है या नहीं
पहले यह जांचता है कि domain की वैल्यू up है या नहीं
अगर ऐसा है तो यह uttar pradesh प्रिंट करेगा और case स्टेटमेंट छोड़ दें
अगर domain up नहीं है तो यह जांचता है कि domain की वैल्यू mp है या नहीं
यदि ऐसा है तो यह madhya pradesh प्रिंट करेगा और ऐसा ही चलेगा
अगर दूर तक कोई समानता नहीं थी तो यह domain की वैल्यू जांचता रहेगा
इस पॉइंट पर यह else स्टेटमेंट का सामना करेगा
अगर उपरोक्त कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं थी
यह ruby code को निष्पादित करेगा जो else घोषणा का पालन करता है
हमारे उदाहरण की तरह यह unknown प्रिंट करेगा
अब फाइल सेव करें टर्मिनल पर जाएँ और टाइप करें
ruby space case hyphen statement dot rb
enter the state you live in: टर्मिनल पर प्रदर्शित होगा
टाइप करें up में और आउटपुट देखते हैं
आउटपुट प्रदर्शित होगा uttar pradesh
आगे पहले की तरह ही ruby फाइल को फिर से निष्पादित करें
इस समय प्रॉम्प्ट पर टाइप करें kl और आउटपुट देखते हैं
यह kerala प्रिंट करेगा
आगे एक बार फिर फाइल को निष्पादित करें
इस समय प्रॉम्प्ट पर टाइप करें tn और आउटपुट देखते हैं
यह unknown प्रिंट करेगा
यह इसलिए है क्योंकि कोई भी case संतुष्ट नहीं हुआ था अतः डिफ़ॉल्ट else स्टेटमेंट निष्पादित हुआ है
आप ruby में अपना casestatements लिखने के लिए सक्षम होने चाहिए
यह आपको इस ट्यूटोरियल के अंत में लाता है
इसको सारांशित करते हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने उपयोग करना सीखा
if statement
else construct ifelsif और
case statements
नियत कार्य के रूप में: ruby प्रोग्राम लिखें :
यह यूजर को एक नंबर एंटर करने को कहता है
फिर उपयुक्त controlstatement उपयोग करें
अगर नंबर 2 का गुणज है तो इसे जाँचें
यदि ऐसा है तो प्रिंट करें the number entered is a multiple of 2
यदि नहीं तो जाचें कि यह 3 का गुणज होना चाहिए
यदि ऐसा है तो प्रिंट करें the number entered is a multiple of 3
यदि नहीं तो जाचें कि यह 4 का गुणज होना चाहिए
यदि ऐसा है तो प्रिंट करें the number entered is a multiple of 4
यदि नहीं तो यह प्रिंट करना चाहिए the number is not a multple of 2 3 or 4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
अच्छी बैंडविड्थ न मिलने पर आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम :
स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं चलती है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
spoken tutorial talktoa teacher project का हिस्सा है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
आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद